जो पीला कलर का है और--

और ऊपर छत सफेद रंग का दिख रहा और लाइट और पंखा भी लगा हुआ है।